और यहां पर काफी सारे सफेद कलर के पाइप लगे हुए हैं प्लास्टिक के।

पीछे कुछ प्लास्टिक के टप से रखें हुए हैं।

और इसमें काफी सारी चीजें हैं।

यहां से एक पूल भी बना हुआ है और इसमें काफी सारा पानी है नदी में।

यहां पर एक टेबल भी पड़ी हुई है।

यहां पर सामने एक दुकान सी है।

और उस पर काफी सारी महिलाएं और व्यक्ति दिख रहे है।

और वहां पर कुछ दुकानें खुली हुई है।

और सामने काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए है।

और इस गोदम में काफी सारे टीन के कनस्तर रखें हुए हैं।

घड़ा घड़ी रखी हुई और यहां पर सामने एक लो इस--

और यहां पर काफी हरियाली है और यहां पर काफी पौधे भी हैं।

जहां पर आसपास काफी हरियाली है काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।